मॉल में दुकनवा में अमोल हमके दिखत ह एकको आदमिया बात करत हमके लउकता ह।

फिर एको बसवो पर पीला रंग के बडा सुंदर ब बडा सा अ बिल्डिंग बा सफेद कलर के ओमे सीसों ओशो लागल ह खिड़कीया में।